गेट के ऊपर बी.सी.एस. --

बहुत सारे कुर्सियां रखी है कुर्सियों के ऊपर बहुत सारे व्यक्ति --

यहां पर बहुत ही ऊंचे-ऊंचे बिजली के खंभे लगे दिख रहे है और बिजली की तारे दौड़ रही --